खड़े हो कर या एकत्रित हो कर मार्सल आर्ट्स की मुद्रा में।

एक बस स्टैंड एक बस स्टैंड जहां पे बस लगा हुआ है साथ में कुछ लोग।

एक क्रीम रोल सा लगता है जो की क्रीम रोल ही है।

एक छो एक उसी के आकर का एक प्लेट में --

यह एक मस्जिद का बाहरी गेट है जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग आ करके नमाज पढ़ते हैं |

एक छोटी सी नदी जिसपे एक बांस का पूल बना हुआ है जो की इस कस्बे को दूसरे कस्बे से जोड़ता है।

दूसरे कार का दूसरी ओर एक कार का टायर खुला हुआ है जिसका मालिक कमर पे हाँथ रख कर के अपने बन कार का बनने का इंतजार कर रहा है।